अनेक सरकारी कर्मचारी होते हैं जो अपने कार्य का निर्वाहन बड़ी ही निष्ठा और कर्तव्य से करते हैं।

ये रंगारंग प्रस्तुति बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत की जा रही है जोकि पन्द्रह अगस्त या छ्ब्बीस जनवरी --

सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है जो की एक बस का है।

तेल या घी कैसे बनाया जाता है तथा उनको पैकिंग कैसे की जाती है ये दर्शाया गया है।

दिखाई गई है ये भव्य आरंभ दीपोत्सव का है जोकि सभी लोग मिलकर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने हरे भरे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

सामने मॉल का चित्र दिखाई दे रहा है।

ऑफिस में कंपार्टमेंट बने हुए नजर आ रहे हैं।

लोग आ रहे हैं जा रहे हैं कुछ गाड़िये भी दिखाई दे रही हैं।

छोटे छोटे बच्चे स्विमिंग करते हुए दिखाई दे रहे है।